इस तस्वीर में मुझे एक पुरुष दिखाई दे रहा है।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

यहां मुझे एक लाइट दिखाई दे रही हैं।

यहां मुझे कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ दवाइयाँ दिखाई दे रहीं हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक फीमेल जनरल वार्ड दिखाई दे रहा है।

यहाँ मुझे कुछ खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक पार्किंग यार्ड दिखाई दे रहा है।

मुझे एक पुरूष दिखाई दे रहा हैं।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

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारी बस दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक सीढ़ी दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर मे मुझे कुछ घर दिखाई दे रहे है।